ढ़ेरी सब लेबर मिस्त्री ने कम करे छे।

पूजा छे भागवत वागवत हो रहल छे एगो मंडप भी बनलो छे जहा की पूजा पाठ यज्ञ का आयोजन होते --